एक व्हाइट कलर का केबिन लग रहा है।

यहाँ चित्र एक रुम का दिखाइ दे रहा है।

जहां पर कुछ लाइट भी चमक रही हैं और दीवार पे भी--

सोफे ए_सी पोस्टर लाइटें सब दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक लड़का--

कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

जहां पर बाहर बहोत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक टी_वी भी नजर आ रही है साथ में एक छोटी टेबल भी नजर आ रही है।

सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक टेनिस ग्राउंड दिखाई--

चित्र में हमें एक बार दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी लाइटे भी चमक रही है।

लिखा इन स्ट्रक्चर कुछ लिखा हुआ नाम नजर आ रहा है।

बाहर पोस्ट पर बहोत सारे कैमरे --

पहाड़ दिख रहा है जो कि किले टाइप दिख रहा है।

जहां पर लग रहा है कि काम चल रहा हैं।

रेड अक्षरों में दिखाई दे रहा हैं।

यहां शोकेशो में तरह तरह की बॉटल --

इस चित्र में हमें बहोत बड़ा सा--